इस तस्वीर में हमें एक पेट्रोल पंप का दृश्य दिखाई दे--

दुकान में हमें पाइप के साथ कोई सरिया भी दिखा दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक--

हमें एक बर्डे पार्टी का दृश्य दिखाई दे रहा है।

कमरे का दृश्य दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें बहुत--

हमे बहुत सारे हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहें हैं।

का नाम गुरुद्वारा शहीद भाई बजिंदर सिंह जी फाजिल का है।